यह यहां मिठाई खरीदने के लिए आया है यहां पे लड्डू पेड़े गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी दिखाई दे रहे हैं।

और यह इसलिए बंधी हुई है की हवा के सहारे यह कहीं उड़ ना जाए पानी से बेह न जाए।

यह एक कांच का गेट लगा हुआ है यह सोनार की शॉप है यहां पे ग्रीन कलर की चटाई बिछी हुई है जहां पे लोग अपनी चप्पल खोलते हैं।

वहां पे एक कैम्पर रखे हुए है रेड ब्ल्यू पर्पल और केतली रखी हुई है डस्टबिन भी रखा हुआ है रेड कलर --

यहां पे बहुत सारी कॉपी किताबें रखी गई है और यहां पे भी लगाई गई है जैसे किसी का फेयरवेल है।

व्हाइट कलर का घर है यहां ये टैक्सियां भी लगातार एक कतार में खड़ी है और यहां पे बहोत भीड़ हो रखी है।

यह एक गली की फोटो है यहां पे बहोत से लोग बैठे हुए हैं एक यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया --

ए_टी_म भी है यहां से लोग पैसे निकलवा रहे है कुछ लोग बाहर वैट कर रहे है कुछ लोग अंदर है एक रेड कलर की ब्लैक कलर की बाइक भी खड़ी है।

यह ब्लैक कलर के खंभों में खड़े हुई एक छपरी दिखाई दे रही जिसपे ये--

बाइक आती हैं यहां पे इनका इलाज किया जाता है यहां पे बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी है और दो अंदर एक आदमी भी खड़े हैं।

पूल बना हुआ है जिस पे लोग बैठे हैं नहा रहे हैं और पास में एक दो तीन स्कूटीयां भी खड़ी है दो तीन बाइक भी खड़ी है जिस ओर यहां पे--